दो मंजिला घर है दोनों तरफ से पेड़ है सड़क है।

यहाँ पे पुतले बने हुए है उसमे कपड़े पहने हुए है ऊपर दो फ्लोर का है ये तीसरे फ्लोर भी है बना हुआ मॉल --

हम जैसे दिखाई दे रहे हैं |

पूजा है जय छठी मईया जय छठी मईया जय छठी मईया जय छठी मईया ये है बहुत धुमधाम से मनाया जाता है त्यौहार।

गेंदा का है सुरजमुखी का दिखाई दे रहा है व्हाइट फूल है चमेली है बहुत सुन्दर है ।

जिम इस्तमाल कर रहे हैं फोटो खिचाया हुआ।

आस पास शटर लगे हुए है ।